दिखाई दे रहा है और कुछ बाइक भी और कुछ एक्टिवा खड़ी दिख रही है है और यहाँ रोड पर थोड़ा सा पानी भरा दिख--

यह एक जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर बहोत ही ज्यादा पत्थर दिखाई दे रहे है यह पत्थर कुछ छोटे और कुछ बड़े दिखाई दे रहे है प--

पत्थर का रंग कुछ ग्रे और कुछ भूरा दिखाई दे रहा है और किनारो के तरफ बहोत ही उचे उचे से पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक बहोत बड़े से बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग की दीवारों का रंग सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है इसमे कुछ बालकनियाँ भी बनी दिख--

यहाँ पर सामने बीचों बिच में एक लोहै का गेट दिखाई दे रहा है यह गेट काले रंग का दिख रहा है और उसके पीछे की तरफ़.--

रियाक चॉइस लिखी दिख रही है और उसके निचे फुटबॉल और बैडमिंटन टंगे दिख रहै है।

और फूलो लड़ियां लटकी दिखाई दे रही है और उसके सामने की ओर बहुत सारे आदमी बैठे हुए भी दिख रहे है।